यह कुछ बिल्डिंग दिख रही है उसके सामने कुछ शाटार दिख रही नीचे की तरफ और वहाँ पे लाईट का फोकस दिख रहा है उपर से लाइटिंग लगी हुई दिख रही बिल्डिंग को।

हाल दिख रहा है और वहा पे दो तिन लोग दिखरहे है इन्स्ट्रमन्ट रखे हुए दिख रहे है वहां पे फेन दिख रहा है।